भगवान की मूर्ति बनी हुई है नमस्कार कर रहे हैं | इधर एक दीवार दिखाई दे रही है जो पीले कलर की है | इधर जमीन पे फर्श बिछा हुआ है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है | एक द दूध की दुकान देख रही है और एक बहुत सारी भीड़ है इधर और एक झूला है और इधर बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही एक --

दिखाई दे रही है एक और बाइक है और इधर टाइल्स लगी हुई है बाइक के टायर हैं और लाइट भी है।

इधर बहुत सारा हॉस्पिटल है जो की सफ़ेद कलर से पुता हुआ है जो की नीले कलर की है।

सभी लोग दिखाई दे रहे है जो की योग कर रहे है यह एक सन दिखाई दे रहा है जो की नीले कलर का कटा हुआ है।

नीचे बिछा हुआ है जो लाल कलर का है हरे पौधें लगी हुई है उनमें फुल लगी है।